वो खाके डस्ट्बिन मे डाल सके ओवर ब्रिज है।

हम सोने के लिए एक तकिये की व्यवस्था है तकिये की व्यवस्था गैलरी है गैलरी के आजुबाजु में शानदार बिल्डिंग है ओर सामने एक चम् पेड़ दिखाई दे रहा हैं।